दिखाई दे रहा है और बड़ा बड़ा दो कम कम एक छोटा एक बड़ा करमबोर्ड है एक व्हाइट ब्लैक शर्ट पहने हुए एक लड़के खड़े है और एक दुकानदार जो है वो दे रहे है।

गेंद भी है और बेट बॉल भी है और किताब भी बहोत सारा टांगा हुआ और बच्चे ब --

यह एक बड़ा यह दृश्य में बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। दो दोनो दरवाजे पे बड़े-बड़े घोड़े भी है। एक गौतमबुद्ध जैसे भी मुरिया दिखाई दे रही है और हरे-भरे खेत भी दिखाई दे रहे है। आसमानी कलर से कलर किया हुआ है।

और भैया सेल्फी लिए हुए है और एक पानी का डब्बा है कान में हैडफ़ोन भी लगाये हुए है।

यह दृश्य में बड़े से फूल की खेती दिखाई दे रही है।

यह दृस में बड़े-सी --